इस इमेज में सामने कुछ लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं।

एक बच्चों की ट्रेन दिखाई दे रही है और यहां पर --

इस इमेज में सामने एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है।